यहाँ पर अनेक सारे आदमी भी आ --

इस नदी के उस किनारे पर मैदान है।

इस नाव पर बहुत से आदमी बैठे हुए है।

ये एक पुरानी हैस्कूल --

मैदान है यह मैदान काफी बड़ा है।

इसके नीचे एक कुर्सी है यहाँ पर ए --

यहाँ पर काफी भीड़ भी है। यहाँ पर एक दूकान है।

उवे आगे के डाला खोले हुए है।

यह गाड़ी काफी लम्बी-लम्बी है।

इस घर में एक टंगना भी है इस टंगना पर तीन कपड़े भी है।

ये बच्चे पढ़ रहे हैं।